नीचे छोटी छोटी टेबल लगी हुई है जिनके बगल में एक बाल्टी है बहार एक बोर्ड लगा है जिसपर हेयर हाउस लिखा है।

कांच का गेट लगा हुआ है बहार की तरफ एक पड़ा है तथा बाइक अ बैसिकल पार्क है और साइड में एक चैनल गेट लगा हुआ है उसके बहार तीन बच्चे खड़े है बोर्ड लगे है।